और एक मैकेनिक बॉनेट की तरफ बढ़ रहा है उसमें कुछ काम करने के लिए औजार भी दिख सक--

और पैसेंजर अपना सामान उठाए जहाज की तरफ जा रहे हैं बहुत ही हसीन मौसम हसीन वादियों के दरमियान--

एमेज में हम देख सकते हैं कि दियोस अस्पताल की का प्लाजा मौजूद है उसके साथ और भी दो-तीन प्लाजाज मौजूद हैं।

और यह दिल्ली में वाकया है और दुनिया की सबसे ज्यादा विजिट करने वाली जगहों में से एक है।

एक कतार लगी हुई है जिसमें की काफी ज्यादा महिलाएं और पुरुष चेकिंग के लिए अंदर जा रहे हैं।